और इसमे बहुत सारी खिड़की भी है और बाउंड्री है।

तीन खंड का बिल्डिंग और बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहा बहुत सारे फत्थर डले हुए है छोटे छोटे और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी है और गा पेड़ भी लगे हुए है बहुत सारे --

एक कार खड़ी हुई है और नीचे पत्थर वाले वो लगे हुए है। पीछे--

यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहा बहुत सारी ग्रीन पेड़ है हरियाली भी है।

और यहा दो मंजिल की बिल्डिंग है और एक बोर्ड लगा है वो समझ मे नहीं आ रह है क्या लिखा है उसमे और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।